यहां पे हरे रंग एवं सफेद रंग की बहुत सारी कुर्सी भी दिखाई दे रही है।

एक व्यक्ति सैंडो गंजी पहना हुआ है यहां पे कुछ कुर्सियांये दिखाई दे रही है।

इस चित्र में बहुत सारे पुरुष एवं महिलाएं दिखाई दे रही है।

इस चित्र में बहुत सारे जिम करने के लिए सामान दिखाई दे रहे है।

यहां पे दो टेबल दिखाई दे रहे हैं एवम काले रंग की बहुत सारी पंखे दिखाई दे रही है।

यहां पे बिल्डिंग के बाहर में कुछ बाइके खड़ी दिखाई दे रही हैं।

डस्टबिन दिखाई दे रहा है जो कि पुतले का डिज़ाइन का बना हुआ है।

यहां पे बहुत सारे स्टैंड लाइट दिखाई दे रही है कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे उस व्यक्ति ने चप्पल भी पहना हुआ है दोनों पैर में और चप्पल उल्टा दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में बहुत सारी बैनर्स भी दिखाई दे रहे हैं।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

यहां पे बहुत सारे व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं एवं कुछ गाड़ियां भी दिखाई दे रही हैं।

यहां पे लोहे का हरे रंग का गेट दिखाई दे रहा है।

सीढ़ी भी दिखाई दे रहा है कुछ घर सफेद रंग का पेंट किया गया है घर में।

बिल्डिंग की खिड़कियांए भी दिखाई दे रही हैं।

घास भी दिखाई दे रही है और बिजली की तार भी दिखाई दे रही है जो कि काले रंग की है।